-- मै दो ये नाव् है और एक नाव मै काफी लोग टूरिस्ट टाइप के बैठे हुए है| और ऊपर पक्षी--

बहुत अच्छा एक तालाब टाइप का लग रहा है।

इसमे एक ऐसा लग रहा है जैसे के मेर्रिज गार्डन टाइप का हो औ--

और कुछ आटा कुछ चीनी के पैकेट रखे हुए हैं पांच- पांच दास किलो के| उसमें रुपया लिखा हुआ है तीन सौ पचहतर ।

यह एक जंगल का व्यू लग रहा है जिसमें कुछ हिरण वहां पर अ मतलब कुछ चारा अ चरते हुए नजर अ रहे है और काफी पेड़ लगे हुए है काफी अ-अच्छा घना जंगल टाइप का लग रहा है ये---

ये भी कुछ मॉडर्न क्लासरूम टाइप का लग रहा है जिसमें खाली रूम है।